औ ग्राउंड में एक अर्गन बांधा है जिसे बहोत सारे कपड़े डालने में बड़े बड़े लाइट लगी हुई है दूर-दूर बहोत बड़े घर बने हुए हैं और घर के आसपास में बड़े-बड़े पेड़ पौधे बने हुए हैं दो तीन बच्चे हैं जो के --

उनके पास बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं और एक बोरा रखा हुआ है एक आदमी बच्चे लोग अपने हाथ को साफ कर रहे हैं पानी से--

बहुत सी एक रॉड लगी हुई है एक आदमी वहा दूर में बहुत से बालू रखा है नीचे बहुत सारी कारे खड़ी है।

अष्ट लक्ष्मी अक्ष्ट लक्ष्मी फैंसी स्टोर --

सब लोग बांट के अपना काम कर रहे हैं लाइटें लगी पंखा लगा हुआ है ऐ_सी लगा हुआ है अलग अलग लाइट लगी हुई हैं।

ये बहोत सारे लड़के हैं जो लाइटिंग लगी नीचे जिम में खड़े होके कैमरे शीशे में फोटो ले रहे हैं पीछे जिम के बहोत सारे आदमी खड़े हैं बहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

के बड़े बड़े झूमर लगे छोटे झूमर है बड़े झूमर है अलग अलग ईद के अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं लाइट लगाओ पंखा लगा हुआ है।

बलूंस लगे हुए हैं अंदर में बाहर में पिक्चर्स लगी हुई मोबाइल नंबर चिपका हुआ है। जी_टी जी_एस_टी